होटल से मंदिर दिखाई दे रहा है| मंदिर का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है | उस पर एक चबूतरा बना हुआ दिखाई दे रहा है।